ये कोई बड़ा सा हॉल है जिसमें पिंक एंड व्हाइट कलर पुता हुआ है।

और जिसमें दो बैठे हुए हैं बहुत सुंदर लाइट लगी हुई है।

दो पुल बने हुए है एक बड़ा सा पुल बना हुआ है सीमेंट वाला--

कुछ नाश्ता पानी मिलता है इस पे सब लोग खाए जा रहे हैं।

एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कंप्यूटर ऑफिस है।